एक जंगल जिसके आसपास कुछ पेड़-पौधे एवं कुछ बंदर बैठे हुए हैं।

एक बड़ा-सा मैदान जिसमे कुछ लोग बैठे खेल रहे हैं और कुछ चढ़ रहे हैं मैदान--

इसमें एक एक बड़ा होर्डिंग बोर्ड जिसमें थम्स अप चार्ज हेवी डिस्टोर हेवी विस्टोर लिखा हुआ है दुकान के सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है दुकान के सामने एक व्यक्ति खड़ा है।